यह गार्डन है यहाँ पर अच्छे कार्टून दुवारा बनाये गए है घोड़े है बतक है बड़े बड़े झाड़ है यहाँ व्रिक्स समान बना है मकान का समान लग रहा है बीच हरी हरी घासें है छोटे छोटे झाड़ है बड़े बड़े हरे हरे झाड़ है।

यह नदी है यहाँ नायो चल रहे है हर इंसान पूजा करने जा रहा है बहुत सारे बोट पे बैठे हुए है बहुत इधर दो स्टॉल लगे हुई है जाहा की दो लेडीज है खड़ी हुई है दो जेन्ट्स है उधर क खुब सारा पानी दिख रहा है ऊपर आसमान दिख रहा है।

यह बस स्टॉप है यहाँ हर कलर कीबस है खड़ी हुई है यहाँ हर इंसान इसमें चढने को घुम रहे है कोई यहाँ आसमान दिख रहा है ऊपर से हरे हरे लम्बे लम्बे झाड़ है ब्लू बसे है रेड है।